होटल के अंदर कुछ आदमी भी हैं।

दुकान के अंदर बहोत सारे सामान कॉपी किताब भी दिखाई दे रही है।

होटल को अंदर में बहोत अच्छी तरीके से सजाया गया है।

यह एक शॉप है जहां पे बहुत सारे अगरबत्ती का ब्रांड मिलते हैं।

तरह तरह अगरबत्ती के पैकेट में अगरबत्ती को पैक किया गया है।

जिम में एक व्हाइट कलर का बोर्ड भी दिखाई दे रही है और तीन खिड़की भी।

इसमें बहुत सारे आदमी बैठे भी हैं वहां पे ट्रैफिक भी लगाया गया है।

हाथी के छोटे आंख भी है दो गो हाथी का छोटा दांत भी नजर आ रहा है।

हाथी काफी लंबा भी है।

कछुए के बगल में बहोत सारे सिक्के फेंके हुए हैं।